पीछे दो ग्रीन कलर के पर्दे भी--

उसके पास कई औरतें पेपर पड़कर खड़ी हैं।

इन सभी चेयर्स का कलर कॉफी ब्राउन है।

गेट भी बना हुआ है गेट --

सामने बिल्डिंग के एक कार भी खड़ी है।

पीछे का गेट भी ओपन है।

इन गमलों को उल्टा सीधा करके रखा हुआ है।

इस ऑफिस में काफी सारी ब्लैक कलर कि चेयर्स पड़ी हैं।

इस तालाब के बीच में काफी बड़े पत्थर पड़े हैं।

इसका नेम मोखा अस्पताल अते किडनी केयर सेंटर है।